बूढ़ा आदमी भी दिख रहा है स--

एक पिलर भी दिख रहा है लंबा अ लड़का लोग ब्लू नील कलर का कपड़ा पहना है।

यहाँं पर कार्निवल सिनेमास का एक अ लिखा हुआ है दिख रहा है लाल रंग का है वो लिखा हुआ है एक दीवार पर दीवार में और सारे बैलून भी--

सफेद रंग का एक छोटा-सा घटा दिख रहा है नया लाइन द रेल लाइन दिख रहा है और जो खिड़की दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

रहा है लाइट जल लाइट से पूरा सजा हुआ है नजारा दिख रहा है दूर से बहोत से सारे लोग खड़ा हुआ है दिख रहा है।

रोड मैरून रंग का दिख रहा है लाइट दिख रहा है।

यह पर एक बा घर दिख रहा है घर के--

ये एक आ बिस्तर का छवि दिख रहा है सफेद रंग का ब्लैंकेट पहना हो चादर सब कुछ है दिख रहा है ब बहोत सारे--